सामने बड़े पेडून हमें दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है।

ऊपर हमें एक बड़ा सा पुल भी दिखाई दे --

शेटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कार उन खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बैंक का और यहाँ पर हमें कांच के गेट भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और यहां पर साइड में जाले ओ पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी हमें दिखाई दे रही है। हरी-हरी घांस हमें दिखाई दे रही है।

सामने हमें यहाँ पर परदे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर हमें छत दिखाई दे रही है वाइट कलर से पेंट --

और हमें यहां पर ऊपर चद्दर की छत दिखाई दे रही है।

और एक बड़ा सा एरोप्लेन भी हमे यहां पे दिखाई दे रहा है। गाड़ी हमें दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।